यहां सामने एक बोर्ड भी पीले रंग का नजर आ रहा है।

यहां कुछ गमलों में फूल भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एवं यह अंगूर किसी डब्बे में रखे हुए नजर आ रहे--

कुछ लाइटें भी नजर आ रही है।

बड़े बड़े मीनार भी नजर आ रहे हैं।

दीवारें सफेद रंग की नजर आ रहे हैं।

एवं कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं और आसमान भी नजर आ रहा है।

यह किसी फूल की दुकान का दृश्य नजर आ रहा है।